और अलग-अलग तरीकों के नजर आ रहे है राखी की डिज़ाइन भी हैंऔर एक व्यक्ति खड़े हैं और वहां लाइट भी नजर आ रहा हैं लाइट में डाला हुआ है।

यहां पोंड दिख रहा है जहां पर काफी पानी नजर आ रही है वहा पर कुछ छोटे-छोटे नाव वहा पर डाली गई है और कुछ हरी घास वहा नजर आ रही है।

ऊपर मे है जो वो नजर आ रहा है और आसमान भी है वो साफ दिखाई दे रहा है काफी सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे है और हरी घास भी नजर आ रही हैं।

और दीवार दोनों ही सफ़ेद नजर के आ रही है और लाइट्स अंदर जा रही है और कुछ हरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

और ऑटो रिक्सा दिखाए दे रहा है एक हरे रंग का वहीं पर कुछ बैलून्स दिख रहे है जिनमे सफेद और लाल रंग के दिख रहे है।